नमस्कार दोस्तों
आईपाइथन की अतिरिक्त विशेषताओं पर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल के अंत में आप अपनी आईपाइथन हिस्ट्री प्राप्त करने में हिस्ट्री का एक भाग देखने में अपनी हिस्ट्री के एक भाग को फाइल में सेव करने में आईपाइथन में एक स्क्रिप्ट रन करने में सक्षम होंगे
इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले हम आपको सलाह देते हैं कि एम्बेलिशिंग आ प्लॉट ट्यूटोरियल को पूर्ण करें
टर्मिनल पर इपिथॉन हाइफेन पाइलैब टाइप करके पाईलैब लोडेड के साथ आईपाइथन शुरू करें
हम पहले एक प्लॉट बनाएँगे और फिर हिस्ट्री देखेंगे और इसे सेव करेंगे इसके लिए हम एक्स लिनस्पेस विथिन ब्रैकेट्स माइनस 2 इंटो पी कॉमा 2 इंटो पी कॉमा 100 प्लॉट विथिन ब्रैकेट एक्स कॉमा एक्ससिन कॉस्क्स टाइप कर सकते हैं और एंटर दबाएँ
हमें एक्ससिंक्स इस नोट डिफाइंड नामक एक एरर मिलती है

जो कमांड्स हमने टाइप किये उन्हें देखें
हिस्ट्री मोड्यूलो हिस्ट कमांड का इस्तेमाल करके पा सकते हैं
अपने टर्मिनल में मोड्यूलो टाइप करें जोकि प्रतिशत चिह्न है फिर हिस्ट और एंटर दबाएँ
जैसा कि आप देख सकते हैं यह हाल के कमांड्स की एक सूची प्रदर्शित करता है जिन्हें हमने टाइप किया
प्रत्येक कमांड के आगे एक संख्या है यह उल्लिखित करने के लिए कि वे किस क्रम में और कब टाइप किये गये हैं
कृपया ध्यान दें कि यहाँ हिस्ट कमांड से पहले एक प्रतिशत चिह्न है
इसका मतलब है कि प्रतिशत हिस्ट एक कमांड है जोकि केवल आईपाइथन के लिए है और पाइथन के किसी अन्य वर्ज़न के लिए नहीं
इस टाइप के कमांड्स को मैजिक कमांड्स कहते हैं
यह भी ध्यान दें कि160hist कमांड खुद एक कमांड है और सबसे हाल के कमांड के रूप में प्रदर्शित है
हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी जो हम टाइप करते हैं वह हिस्ट्री के रूप में संचित होता है इसका विचार किये बिना कि यह कमांड है या एक एरर या आईपाइथन मैजिक कमांड
यदि हम चाहते हैं कि हाल के केवल 5 कमांड्स प्रदर्शित हों तो हम प्रतिशत हिस्ट कमांड पर संख्या को तर्क के रूप में पास करते हैं
अतः प्रतिशत हिस्ट 5 हाल के 5 कमांड्स प्रदर्शित करता है प्रतिशत हिस्ट कमांड को सम्मिलित करके
डिफ़ॉल्ट संख्या 40 है
अतः इसके अभ्यास के लिए हम टर्मिनल में परसेंटेज हिस्ट स्पेस 5 टाइप कर सकते हैं
एंटर दबाएँ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
hist के प्रलेखन को पढ़ें और पता करें कि 5 और 10 के बीच की सभी कमांड्स को सूचीबद्ध कैसे करें
जैसा कि हम160 हिस्ट प्रलेखन से देख सकते हैं160 हिस्ट 5 10 5 से 10 तक कमांड्स को प्रदर्शित करता है
अब हमारे पास हिस्ट्री है हम इसका कमांड प्रोम्प्ट पर अभ्यास करेंगे अतः टाइप करें परसेंटेज हिस्ट 5 स्पेस 10 और एंटर दबाएँ
हम हिस्ट्री से अपेक्षित कोड की लाइन को सेव करना चाहेंगे
यह परसेंटेज सेव कमांड का इस्तेमाल करके संभव है
इससे पहले कि हम यह करें सबसे पहले हिस्ट्री देखें और पता करें कोड्स की कौन सी लाइन्स की हमें आवश्यकता है
अतः टाइप करें परसेंटेज हिस्ट और एंटर दबाएँ
पहली कमांड है लिनस्पेस
किन्तु दूसरी कमांड वह कमांड है जिसने हमें एरर दी थी
अतः हमें दूसरी कमांड की आवश्यकता नहीं है
तीसरी से लेकर छठी तक कमांड की आवश्यकता है
हालाँकि सातवीं कमांड सही है हमें इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम आठवीं कमांड में टाइटल सही निर्धारित कर रहे हैं
अतः हमें अपने प्रोग्राम के लिए पहले तीसरी से छठी तक और आठवीं कमांड की आवश्यकता है
अतः आप सिन्टैक्स में टाइप कर सकते हैं परसेंटेज सेव स्लैश होम स्लैश फॉसी स्लैश प्लॉट अंडरस्कोर स्क्रिप्ट डॉट पाय स्पेस 1 स्पेस 3 हाइफेन 6 स्पेस 8 कमांड कोड की पहली लाइन और फिर तीसरी से छठी तक फिर आठवी लाइंस को निर्दिष्ट फाइल में सेव करता है
कमांड्स को सेव करने के लिए परसेंटेज सेव का पहला तर्क फाइल का पाथ है
और इसके बाद के तर्क कमांड्स हैं जोकि दिए गये क्रम में सेव करने के लिए हैं
यहाँ विडियो रोकें निम्न अभ्यास करें और विडियो फिर से चलायें
y एक्सिस के लेबल को य में बदलें और कोड की लाइनों को तदनुसार सेव करें
हम इन्टरप्रेटर पर कमांड यलाबेल का उपयोग कर रहे हैं
यलाबेल कोष्ठकों के अंदर डबल कोट्स में य और एंटर दबाएँ
और फिर आप परसेंटेज सेव कमांड कर सकते हैं
मतलब आप टाइप कर सकते हैं परसेंटेज सेव स्लैश होम स्लैश फॉसी स्लैश एक्जाम्पल अंडरस्कोर प्लॉट डॉट पाय स्पेस 1 स्पेस 3 हाइफेन 6 स्पेस 10 अब हमारे पास एक फाइल में कोड की अपेक्षित लाइंस हैं सीखते हैं कि फाइल को एक पाइथन स्क्रिप्ट की तरह रन कैसे करें
हम इसे करने के लिए आईपाइथन मैजिक कमांड परसेंटेज रुन इस्तेमाल कर रहे हैं
टाइप करें परसेंटेज रुन स्पेस हाइफेन आई स्पेस स्लैश होम स्लैश फॉसी स्लैश प्लॉट अंडरस्कोर स्क्रिप्ट डॉट पाय स्क्रिप्ट रन होती है किन्तु हम प्लॉट नहीं देखते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम एक स्क्रिप्ट रन करते हैं हम इंटरैक्टिव मोड में नहीं होते हैं
अतः प्लॉट देखने के लिए अपने टर्मिनल पर टाइप करें शो फिर कोष्ठक यहाँ पर विडियो रोकें निम्न अभ्यास करें और विडियो फिर से शुरू करें
प्रतिशत हिस्ट और प्रतिशत सेव का इस्तेमाल करें और एक स्क्रिप्ट बनाएँ जिसमें फंक्शन show हो
प्लॉट बनाने के लिए स्क्रिप्ट रन करें और उसे दर्शायें
अतः आप टर्मिनल पर टाइप कर सकते हैं परसेंटेज हिस्ट स्पेस 20 हम पहले इस कमांड का इस्तेमाल करके हिस्ट्री देखते हैं

फिर कमांड परसेंटेज सेव स्पेस स्लैश होम स्लैश फॉसी स्लैश शो अंडरस्कोर इनक्लूडेड डॉट पाय स्पेस 1 स्पेस 3 हाइफेन 6 स्पेस 8 14 एंड 17 का उपयोग करके स्क्रिप्ट सेव करें
फिर अगली लाइन पर आप टाइप कर सकते हैं परसेंटेज रुन हाइफेन आई स्लैश होम स्लैश फॉसी स्लैश शो अंडरस्कोर इनक्लूडेड डॉट पाय फिर प्लॉट पाने के लिए टाइप करें शो फंक्शन
हमें अब वांछित प्लॉट मिलता है
रुन के बाद हाइफन आई सम्मिलित करने का कारण है कि इन्टरप्रेटर को निर्देशित करें कि यदि कोई नाम नहीं मिला तो उसे इन्टरप्रेटर में खोजें
अतः यह सब सिन प्लॉट पी और शो जोकि स्क्रिप्ट में उपलब्ध नहीं हैं वह इन्टरप्रेटर से लिए गये हैं और स्क्रिप्ट को रन करने के लिए इस्तेमाल किये गये हैं
यहाँ पर विडियो रोकें निम्न अभ्यास की कोशिश करें और विडियो फिर से चलायें
स्क्रिप्ट को बिना हाइफन आई ऑप्शन के रन करें
क्या आपको कोई अंतर मिला
अतः आप परसेंटेज रुन स्लैश होम स्लैश फॉसी स्लैश इनक्लूडेड हाइफेन इनक्लूडेड डॉट पाय टाइप कर सकते हैं
हम देखते हैं कि यह नमीरर देता है जो दर्शाता है नामे लिनस्पेस इस नोट फाउंड
इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आ गये हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने परसेंटेज हिस्ट कमांड का इस्तेमाल करके हिस्ट्री पता करना सीखा
फिर परसेंटेज हिस्ट कमांड में एक तर्क पास करके हिस्ट्री का केवल एक हिस्सा देखा
फिर परसेंटेज सेव कमांड का इस्तेमाल करके कोड की वांछित लाइनों को वांछित क्रम में सेव किया
फिर सेव्ड स्क्रिप्ट को रन करने के लिए परसेंटेज रुन हाईफन आई कमांड का इस्तेमाल किया
कैसे आप हाल की पाँच कमांड्स प्राप्त करेंगे
और यहाँ चार विकल्प हैं परसेंटेज histपरसेंटेज हिस्ट माइनस 5परसेंटेज हिस्ट 5परसेंटेज हिस्ट 5 टो 10
आप लाइंस 2 3 4 5 7 9 10 11 कैसे सेव करेंगे और विकल्प हैं परसेंटेज सेव फाइलपैथ 2 हाइफेन 5 7 9 हाइफेन 11परसेंटेज सेव फाइलपैथ 2 हाइफेन 11परसेंटेज सेव फाइलपैथ परसेंटेज सेव 2 हाइफेन 5 7 9 10 11
और अंतिम सवाल है कि कमांड परसेंटेज हिस्ट 5 10 क्या दर्शाएगा हिस्ट्री कमांड को सम्मिलित करते हुए हाल में टाइप की गयी 5 से 10 कमांड्स हिस्ट्री कमांड को हटाकर हाल में टाइप की गयी 5 से 10 कमांड्स अतः अब उत्तर हैं हाल में टाइप की गयी 5 कमांड्स को पाने के लिए हम पहले प्रश्न के लिए हम लिखते हैं परसेंटेज हिस्ट 5
अतः दूसरे सवाल के निर्दिष्ट कोड्स की लाइनों का सही उत्तर है परसेंटेज सेव फाइल पथ 2 हाइफेन 5 स्पेस 7 स्पेस 9 हाइफेन 11
फिर तीसरा उत्तर है परसेंटेज हिस्ट 5 स्पेस 10 जो हाल के 5 से 10 कमांड्स को हिस्ट्री कमांड सहित दर्शाएगा
इसी के साथ हम यह ट्यूटोरियल समाप्त करते हैं
अतः हम आशा करते हैं कि आपने आनन्द लिया और इसको लाभदायक समझा
मैं रवि कुमार आई आई टी बॉम्बे की तरफ से अब आपसे विदा लेता हूँ